सन्राइज़ बुक स्टोर लिखा हुआ है यहाँ पर बहोत सारी बुके दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर कुछ कुरकुरे के पैकेट भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे लिफएबॉय साबुन हार्यपिक दिखाई दे रहा है नीचे टाइल्स लगे हुए हैं ऊपर दीवाल ऊपर टीन शेड दिखाई दे रहा है जो टीने लगी हुई ।

यहाँ ऊपर पंखा दिखाई दे रहा है जो चलते हुए दिखाई दे रहा है वेसे पंखा सफेद कलर का है बाजू मे एक बल्ब लगा हुआ है जो जलता-जलता जल-जल रहा है यहाँ बाजू मे एक मशीन रखी हुई है सफेद कलर की है यहाँ बहोत सारी पेन बहोत सारा समान दिखाई दे रहे हैं ।